और सब पे गेट लिखे हुए हैं।

सामने पानी पानी है उसके अंदर भैंसे नहा रही है उसके पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।